इस तस्वीर में हम देख सकते है यहां पर बहुत सारी हिरण दिखाई दे रही है जो की कुछ चारा चर रहे है इसके आस-पास हमे।

सूखे झाड़ के गिर गए यहाँ पे एक बड़े सा बरगद का पेड़ भी दिखाई दे रहे है आस पास हमें कुछ धुप की रोशनी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें कुछ लोहे के पाइप दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोहे की जाली दिखाई दे--

ऊपर में खुला आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें पत्ते दिखाई दे रहें हैं। यहाँ पर हमें दो मंजिला इमारत दिखाई दे रही है दरवाजे दिखाई दे रहें हैं।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

रिचार्ज शॉप दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमे एक मोबाइल फोन भी दिखाई दे रहा है बाहर दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं एक सड़क दिखाई दे रही है उसके पास में कुछ दूसरी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है अँधेरा हो रहा है।